इमेज में हमें चारों तरफ बहुत हरियाली दिखाई दे रही है देखने में बहुत अच्छा स्टैन्ड दिखाई दे रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा यहां पर चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं यहां पर--

इस इमेज में हमें ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको बहुत सारे लोग ढोलक बजाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर --

इस ईमेज मे हमे एक ड्रेस दिखाई दे रहा है। एक जैसी दिखाई दे रही है जिसमे बहोत --